और इहा मूझे ए.सि. लगि हूइ दिखाई दे रही है फेन लगे हैं दिखाई दे रही है लाइट लगे हुए दिखाइ गैलरी नजर आ रही है।

मूझे बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे घने पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं यहां मुझे घने घने पौ पौधे नजर आ रहे हैं।

दे रही है और ब्लैक कलर की मशीन दिखाई दे रही हैं और इसमें कुछ लिखा हुआ पर दिखाई दे रहा है और विंडो नजर आ रही है और मतलब लगे हुए दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की मशीन दिखाई दे रही --

और ईहा मुझे कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं चेयर पर और यह मुझे बहुत से मकान नजर आ रहे हैं दूर-दूर तक घनी ब्यापसी दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बहत सि लोग दिखाई दे--

टेंपल दे रही हैऔर टेंपल में कुछ ही मूर्तियां बनी हुई माता रानी की दिखाई दे रही है और भी मूर्ति दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है। माल नहीं आऊंगी बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है। बहुत सारी फोटो दिखाई दे रहे है। यहां मुझे फैंसी कपड़े दिखाई दे रहे है।

पॉच छे सात और मुझे बहुत सारे दूर-दूर व्यक्ति नजर आ रहे हैं और कुछ--

एक गैलरी दिख रही है और गैलरी के मेरा है कुछ उम वेलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां कुछ चेयर रखे दिखाई दे रही है।

और बहत सि जानवर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे हिरण नजर आ रही हैं ब्लैक कलर की हिरण दिखाई दे रही है बुरी दिखाई दे रही कुछ पानी पिति हुई नजर आ रही है बहत सि हिरण दिखाई दे रही है।